दुकान में दिखाई दे रहा है उसमें एक आदमी भी दिखाई दे रहा है सामने पौधा भी दिखाई दे रहा है।

आप देख सकते हैं ऑफिस है ऑफिस में बहुत सारे आदमी हैं बहुत सारे कुर्सियां हैं कुर्सियों में बैठे हैं।

लाइट दिखाई दे रहा है फैन दिखाई दे रहा है घड़ी दिखाई दे रहा है अलमारी दिखाई दे रहे है।

तार दिखाई दे रही है साइकिल दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है।

इसको पेंट किया गया व्हाइट और ब्लू कलर से जो यहां बनी हुई हैं।

आंगन में मार्बल का काम किया गया है डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

बहोत ही अच्छा डिजाइन नजर आ रहा है छोटे पौधे हैं सड़क है।

एक कगो आदमी के हाथ में मोबाइल दिखाई दे रहा है बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

टेंट बना हुआ नजर आ रहें हैं और भी बहुत सारे आदमी --

दरवाजा दिखाई दे रहा है एक बैट दिखाई दे रहें हैं।

देख सकते है एक बहुत बड़ा पत्थर है पत्थर के ऊपर चढ़ कर एक आदमी बैठा हुआ नजर आ रहा है।